सफेद रंग का पंखा लगाया गया है लाल रंक के बैलून से सजाया गया है बहोत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है उसपे --

इनका एक हाथ ऊपर की तरफ है।

बॉउंड्री वॉल है निचे का फाउंडेशन भी सफ़ेद रंग का है।

एक मैदान में एक लड़का कंधे पर काले रंग का बैग लिए खड़ा है।

और तार भी देखे जा सकती --

बगल में एक ईटों से बनी एक लम्बी दिवार और उसके ऊपर स्टील की एंगेल की बॉउंड्री वॉल बनी देख पा रहा हूँ।

बगल में भी एक ईटो की बनी बड़ी सी दीवार को देख पा रहा हूँ जब की बीच में एक गैप दिख --

यहाँ पे मैं एक लम्बे रास्ते को देख पा रहा हूँ जो रोड जैसा --

पीछे हरे रंग के पेड़ है।

लैंडलाइन फ़ोन काले रंग का एक मॉनिटर एक काले रंग का रिमोट --

एक कैलेंडर भी दिवार पर टंगा है एक लकड़ी का मंदिर भी ऊपर टंगा--

पीछे एक खिड़की का कुछ हिस्सा दिख रहा है।